यह फोटो एक दुकान की है जहाँ फोटो फ्रेम किए हुए ढेर सारे तरह तरह के फोटो स्लेबस में रखे गए है।

यह फोटो एक ज़िम की हैं यहाँ जीम करने वाले ढेर सारे उपकरण रखे हुए हैं।

यहाँ पैरा मेडिकल सम्बंधित डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की जाती है।

यह फोटो एक बहोत बड़े बिल्डिंग की है जो बहोत काफी समय बनी हुई है।

इस हॉल में दो-तीन व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं| यह लगता है सिनेमा हॉल का दृश्य है जहां मूवी देखने के लिए ढेर सारी कुर्सियां रखी गई है।

यह फोटो भारतीय स्टेट बैंक की है भारतीय स्टेट बैंक सड़क के एक किनारे सतिथ है और भारतीय स्टेट बैंक के सामने एक गाड़ी और एक टेम्पो जाती हुई दिखाई दे रही है।